और चट्टानें भी दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान है जहां पर बहुत सारी कटोरिया दिखाई दे रही है और गिलासे भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक व्यक्ति भी है और यहां पर बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं।

और यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है।

एक बिजली का खंबा भी नजर आ रहा है।

वहां पर एक दीवार में छोटा भीम का टैटू बना हुआ है।

यह एक गार्डन है जहां पर ग्रीन कलर की ग्रासे नजर आ रही है।